यहां व्हाइट कलर की कार दिखाई दे रही है।

उपर सामने पोस्टर लगा है पीले कलर का।

कारपेट बिछा हुआ है ग्रीन कलर का।

जिसमे एक बाइक दिख रही है बाइक पे एक आदमी बैठा है।

कुछ लोग अंदर दिखाई दे रहे हैं एक आदमी बैग लटकाए है।

और इसकी जमीन मिट्टी की है।

यह एक रोड दिखाई दे रही है जो पत्थर की है।

पर रेड कलर पे अमर उजाला लिखा है।

और इसमें कुछ लाइटें लगी हैं।

कुछ खम्भे दिखाई दे रहे हैं।

एक सीढी है एक आदमी खड़ा है।

यह एक पेट्रोल टंकी है जिसमें तीन कार दिखाई दे रही हैं एक ब्लैक कलर की कार बाहर खड़ी है।